एक आदमी किसी औरत को कोई गिफ्ट दे रहा है।

बिल्डिंग के सामने की तरफ एक पोस्टर लगा है जिसपे मानो नेत्र बना हुआ है।

जिन्होंने रेड कलर साड़ी पहेन रखी है।

साइड में मुझे एक डिवाइडर भी नज़र आ रहा है जिसपर बहुत सारे पौधे लगे हैं।

साथ ही मुझे एक लोहे की टीन भी नजर आ रही है जो काफी दूर तक फैली हुई है।

बहोत सारे बच्चे भी मुझे दिखाई दे रहे हैं।

बहोत सारी शॉप दिखाई दे रही है जिसमें एक बोर्ड भी लगा है दांतों का अस्तप अस्पताल।

नीचे की तरफ बहोत सारे गमले रखे हैं जिनके अंदर छोटे छोटे पौधे भी लगे हुए हैं।